पुल जैसा बना हुआ है जिसके नीचे एक शेर बैठा है। पुल चार खम्भों पर खड़ा है।

धोती कुर्ता पहन रखा है। कुछ ने शर्ट पैंट पहनी हुई है। औरतें हैं जिन्होंने साड़ियां पहन रखी हैं। दूर-दूर --

यहाँ जिसमें से तार है। एक मछली बनी हुई है। एक आदमी खड़ा है। एक महिला है।

एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने नीले रंग की पैंट और सफ़ेद रंग की शर्ट पहन रखी है। कुछ कुर्सियां भी पड़ी हुई हैं। ।

और भी दिखाई पड़ रहे हैं। पास में कुछ बेलें दिखाई पड़ रही हैं। एक दूर कहीं पेड़ नजर आ रहा है।

एक जिम है जहाँ पर इस वक्त कोई भी नहीं है। उसकी मशीन दिखाई पड़ रही है। कुछ गोल-गोल चक्के हैं।

शहनाज हुसैन लिखा हुआ है। चौबीस कैरेट गोल्ड लिखा हुआ है।

दूर कहीं पेड़ दिख रहे हैं। एक पेड़ पास में भी दिख रहा है। शाम का वक्त होने की वजह से हरा रंग काले में प्रतीत हो रहा है।

जीन्स की पेंट पेहनी है। सफ़ेद और काले रंग की शर्ट पेहेन रखी है। नाइ ने चेकदार शर्ट पेहेनी हुई है। काली पैंट पेहनी है।